सामने एक दुकान दिखाई दे रही है उसके ऊपर कुल्फी की कुल्फी की चॉकलेट बनी दिखाई दे रही है। ऊपर कोको कोला दिखाएं दे रहे हैं। कुछ पानी की बोतल रखी हुई हैं। कुरकुरे लिखा दिखाई दे रहा है। ये एक--

ये कुछ ल लाइटें लगी हुई हैं अंधेरे का सीन है सामने एक डस्टबिन भी रखा है एक बड़ा सा पतीला भी रखा हुआ है।

खाना वाना खाते लोग नजर आ रहे हैं किसी पार्टी व शादी में खाने पैक कर करके रखा--